जंगल मे कुछ लोग कुछ कैंपिंग करने के लिए अ आये हुए है ।

और चर्च के बाहर जीसस क्राइस्ट की फोटो लगी हुई हैं।

वन मंथ एंट्रेंस फ्री --

टीव कुछ टेबले रखी हुई है।

जीन्स पहनी हुई है ब्लू कलर के शूज भी पहने हुए है और टोपा भी लगाया हुआ है।

ये एक छोटा-सा स्टेट दिखाई दे रहा है जिसमे एक ट्रम्प --